वैसे तो देख रहा हु की एक बंगला दिखाई दे रहा है लेकिन यहां शायद लगा रहा है कि सरकारी कोई कलेक्टेड है।

शायद ऐसा लग रहा है कि इधर इधर शायद मुर्गा मच्छी मिलता होगा आदमी लोग वाद इसलिए बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं इधर यहां पर--

लगता है यह हाईवे लाइन है जहां ट्रकों की लाइन लगी हुई है लगता आगे कोई मंत्री आया है तो जाम लगा हुआ है।

लग रहा ये दादू का ढाबा है या मुर्गा मच्छी और--

और सामने जैसे टंकी भी दिख रही है मुझे शायद सामने--